और यहाँ एक यहाँ एक मैथली बुक स्टो बुक सेंटर है और यहाँ पे बुक भी बहोत सारे मिलते हैं।

और जो मिस्त्री है वो करेंगे और कार का आगे का बम्पर है और पूरा बोनट टूटा हुआ है।

ये एक फ्लाई ओवर की फोटो है और ये एक आपको फ्लाई ओवर नज़र आ रहा होगा।

और फोटो भी अच्छी आई हुई है और ये जो कुछ अधिकारी है सरकारी अधिकारी जो जमीन को मापने आए हुए हैं। जमीनों ने जमीनों साइज नापा हुआ है।

और देखिए बहोत अच्छी छत --

और सामने टेम्पो भी जाते हुऐ नज़र आ रही होगी और बोहोत अच्छी फोटो आयी हुई है मॉल की मॉल बहोति ही लक्ज़री मॉल नज़र आ रहा है।

और कभी आप विजिट करना जरूर --

और यहाँ पे पानी भरा हुआ है। ये पानी में अपना चारा ढूंड रहा है।

क्या है जो मूर्तियों गोदी में एक मूर्ति भी लेटी हुई है और इसके सामने फूल रखे हुए हैं।

बाते कर रहे हैं। ये असेंबली का टाइम है। ये टीचर हैं जो भी ये भी मस्त खड़े हैं बेपरवाह।